बिल्डिंग के आगे ही बिल्डिंग की सीड़ीयां नजर आ रही है।

सड़क के ही सामने हमें कुछ साइकिल और ठेले दिखाई दे रहे हैं।

नीचे हमें और भी लोग खड़े हुए दिखाई देख रहे हैं कुछ ब्लैक टी-शर्ट में --

भवन के नीचे हमें पार्किंग दिखाई दे रही है।

फ्लैश फोन का ऑन दिखाई दे रहा सामने कुछ प्रोडक्ट्स हमे दिखाई दे रहे है और स्विच बोर्ड भी हमे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में हमें सामने एक शॉप दिखाई दे रही है ।

इस फोटो में हमें बहोत सारे वर्कर्स दिखाई दे रहे हैं।

उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का साइन बना हुआ है और बोर्ड भी लगा हुआ है।

उसपर इंडियन रेलवे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

जो कि पेड़ से बने हुए दिखाई दे रही है।

ब सामने जो बड़ा भवन है उसमें खिड़की दरवाजे और बालॅकनीज दिखाइ दे रही है।

रोड दिखाई दे रहा है रोड के आस-पास रखी हुई मिट्टी दिखाई दे रही है ।